इससे लगता है कि यह कोई स्कूल का दृश्य है।

जिसमें कई सारे बच्चे खेल रहे हैं।

बगल में कैमरा के लिए फोटो के लिए छतरी भी लगी हुई दिखाई पड़ रही है।

कुर्सी के बगल में कुछ कागजात रखे हुए हैं।

इसमें दो जगह फोनपे का स्कैनर भी लगा हुआ है।

यहां पर एक शिव मंदिर दिखाई दे रहा है।

इसमें दो व्यक्ति छड़ को पकड़े हुए हैं।

यहां कई सारी मशीनें लगी हुई हैं।

दीवाल पर ए_सी भी लगा हुआ है।